इस चित्र मे एक पहाड़ दिख रहा है पहाड़ और कुछ पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे।

इस चित्र मे एक पगझंडी दिखाई दे रही है। जिसके आस पास कुछ पेड़ पोधे लगे हुए दिख रहे --